हरी कलर की घास है जमीन पर--

बहोत सारी लाइटे लगी हुई है पंखे लगे हैं लोग बैठे हुए हैं कुछ खड़े हुए हैं।

एक तार गया है उसके ऊपर पन्नी लटकी हुई है।

नीचे की जमीन कच्ची है आइटसाइट पेड़ नजर आ रहे हैं।

गाड़ियां जा रही हैं ऑटो आ रहे हैं।

उसके ऊपर बहोत सारे पत्तिये नजर आ रहे हैं।

एक घर दिख रहा है जो क्रीम कलर का--

जमीन कच्ची नजर आ रही है हरी घास दिख रही हैं।

जीने बने हुए हैं रेलिंग लगी हुई है।

हरी घास पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

नीचे लकड़ी पड़ी है बहोत सारे कंकड़ पत्थर कचरा पड़ा हुआ है।

पत्ते पड़े हुए हैं कपड़े लत्ते चीज के पैकेट्स पड़े हुए है।

नीचे हरी घांस है जमीन कच्ची है।

बैठने के लिए एक खांबा है उस पे लाइटें लगी हुई हैं।

बाहर एक आदमी खड़ा है दर अ उम्म्म्म लकड़ी लेकर--

सामने हरे कलर का कुछ दिख रहा है नीचे जमीन बनी हुई है।

वायर नजर आ रहे हैं खंबा लगा हुआ है।

रीलें नजर आ रहे हैं बहुत सारे बलूंस दिख रहे हैं।

नीचे हरे कलर का कारपेट बिछा हुआ है।

बहोत सारे बैलून नजर आ रहे हैं हरे कलर के ऑरेंज कलर के सफेद कलर के --

बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं मोटरसाइकिलें बुलेट --

कच्ची जमीन है जिस परे बहुत सारी घास लगी हुई है बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

सामने ईंटों की एक दीवार खड़ी है।

ऊपर बादल बहुत प्यारा लग रहा है सफेद कलर का ब्लू कलर --

सामने एक बहुत बड़ी खिड़की है स्लाइडर वाली--

पानी नजर आ रहा है कुछ लोग नजर आ रहे हैं।